और यहाँ पर बहोत सारे लोग यहाँ पर आए हैं।

यहां पर अंडा भी मिलता है। और अंडा का आमलेट भी बनाया जाता है। और --

और ये लोगों का एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में काफी --

लोगों का आना जाना होता है। और यहाँ पर आप देख रहे --